घर है यह घर काफी बड़ा है इस घर में कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ पर काफी सजाया गया है यहाँ पर काफी भीड़ भी है।

बस स्टेशन है यह बस स्टेशन में अनेक सारे बस लाइन में लगी है यहाँ पर तरह-तरह के बस है यहाँ पर सभी बस बड़े हैं।

यहा पर आदमी मूंगफली बेच रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं।

यहाँ पर बस मे चढते हैं। ये बस मे भाड़ा देते हैं। ये बस एक जगह से दुसरी जगह जाती --